यह बहुत सी किताबें रखी हुई हैं कुछ लोग भी खड़े हैं कुछ बैठे हुए हैं।

ये तस्वीर एक सैलून की तस्वीर है।

इस तस्वीर में गुलाब के फूल का बड़ा सुंदर पौधा दिखाई दे रहा--